और बादल दिखाई दे रहे है जो व्हाइट और ब्लू लग रहे है और मतलब कुछ खड़ा हुआ भी है यहा पे।

यहाँ का मौसम दिखाई दे रहा है जो की ब्लू नीला मौसम है बादल दिखाई दे रहा है जो व्हाइट है और ग्राउंड दिखाई दे रहा है पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है खम्भे दिखाई दे रहे है और बाउंड्री उठी हुई है।

यह पे बहुत सारी जिम जॉइन करने की मशीने राखी हुए है नीचे टाइल्स है टाइल्स पे एक लड़का एक लड़की एक लड़का है जो बैठा हुआ है चैर पे एक लड़की है जो खड़ी हुई है ।

एक मतलब कुछ है कांच का उसके अंदर बोरिया रखी हुई है और नीचे टाइल्स है ऊपर भी मतलब एक घर जैसा बना है जो की ईंटों का है और सोफ़े वगेरा भी है जिसमे लाइटे लगी हुई है।

मुझे यहां पे पेड़ नारियल के पेड़ दिखाई दे रहें हैं आ मतलब एक नदी दिखाई दे रही है नदी के ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

वो बदल दिखाई दे रहा है वो बदल का कलर ही कुछ अलग स दिखाई दे रहा है छोटे छोटे पेड़ पौदे दिखाई दे रहे है जो बी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है।

ये मतलब बहुत सारा यह जो कि सामान रखा हुआ है और टाइल्स वगेरा दिखाई दे रही है और दो तीन कलर के दिखाई दे रहे है।

और इसके आगे एक साइकिल खड़ी हुई है और मतलब वो लगी हुई है खिड़की वगैरा दिखाई दे रही है और मतलब बस वगैरा दिखाई दे रही है जिसका कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है नीचे रोड दिखाई दे रहा है।